उठ भी दिखाई दे रहा है शटर भी लगी हुआ है --

-- ना हुआ है घर के नीचे-नीचे टीन भी लगा हुआ है देखने मे --

एक माल भी खुला हुआ है। उस में कुछ उस माल में जीपी की दुकान भी रखी हुआ है देखने में मुझे लाल कलर दिखाई दे रहा है।

ने मे मुझे सारी बाते अच्छी भी लग रही है ने मे मुझे सुंदर भी--